यहाँ पर मै देखा पा रहा हु की एक बड़ा सा ही फिल्ड परा उसके साइड में वृक्ष भी लगे हुए है और बिच में उसके --

जस्ट सामने एक मोटर बाइक और एक स्कूटर खड़ा हुआ है और उसके साथ में --

हरियाली सी दिख रही है और वो भाई साहब --

वस्तु और पहने हुए है।

वैठी वह खड़ी नजर आ रहीं हैं ऐसा लग रहा है की वो --

यहाँ पर मै देख पा रहा हूँ की एक एस.बी. आई --

हमें दिख रहे हैं और वे फूल अच्छी तरह से खिले हुए लग रहे हैं और --

यहाँ पर हमे एक एकेडमी सी दिख रही है जिसमे --

नीली कलर की पैंट है उसके साइड में --

यहाँ पर हमें एक शोरूम सा दिख रहा है। उसके ऊपर लिखा है है दया हेयर कटिंग सोलर

यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ की योगा अ अकेडेमी है जिसमे --

यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि एक जीम अकेडेमी है और वहाँ --

आप और मैं देख पा रहा हूँ की एक तालाब है उसके साइड में वृछ लगे हुए हैं और सूरज --

चार रास्ते भी हैं जिस पर आप पैर के डायरेक्ट स्विमिंग पूल में जा --